एक मेंदान है मेंदान में हरी-भरी गांव से और कुर्सियां कुर्सियां सफेद रंग के वह हरे रंग की सामने कुछ टीचर बैठे हैं और कुछ लड़के हैं।

पीछे एक आदमी खड़ा है जो कि सिर में टोपी पहना हुआ है पीछे एक स्टार्टर लगा हुआ जिसमें लाल कलर की लाइटें चल रही है ऊपर बहुत सारी तार लगी हुई हैं ।

और उसके नीचे बहुत सारी औरतें और आदमी लोग बैठे हुए हैं और बगल से--

एक स्टेज बना हुआ हे जिसमे चार लडकी हे जोकी काले कलर का कोट पेहनी हुई हे और सर में लाल कलर की सफेदी कलर की टोपी पेहनी हुई हे और एक लडकी हे जो की सफेद कलर का ड्रेस पहणी हुई हे और एक सेन्टा क्लज हे।

रास्ते में एक को एक लाइन पंक्ति में आदमी लोग हैं जो की ढोलक रखकर बजाते हुए आ रहे हैं और सामने बीच में एक पंक्ति लड़कियों की है जो की साड़ी पहनी है और वह किसी वह कोई वाद्य यंत्रबजा रहे है ।